यह द्रश्य हमे चट्टान का बताया गया है जहाँ पे बहुत हरियाली है वहाँ पे बहुत से पेड़ लगे हुए है तथा उसके पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है।

तथा वहाँ पे बच्चे घूम फिर रहे है एक बच्चा लाल रंग की टीशर्ट पहने खड़ा है तथा बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

इसके ऊपर बहुत सारी लड़कियां जमी हुई है तथा इसके साइड से रोड निकली हुई है इसके ऊपर लोग हम भ्रमण कर रहे हैं तथा वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है।

स्किनी कलर का है वह दुकान के सामने एक बड़े सा अपार्टमेट हैं जिसके अंदर --

के आस-पास बहुत से आदमी बैठे हुए हैं तथा वो आपस में बात कर रहे हैं तथा बाकी के लोग उधर भ्रमण करने आये हैं तथा बच्चे अपने क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ मैदान में --